इ आगे एक पेड़ लगा हुआ है।

में ब्लू कलर का --

है बाउंड्री है।

एक आदमी उसमें खड़े होकर पैसे मिला रहे ।

का है आगे लाइट लगा हुआ --

उसके दो बैक लाइट दिख रहे हैं।